आर्थोरेपेटीक ए हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेष मतलब सब ईलाज होता है यहाँ पे देख सकते हैं निमो नीचे मोबाइल नंबर --

कितना अच्छा लग रहा है दिखने में | कितना बढ़िया लग रहा है देख सकते हैं | बहुत बढ़िया जगह है देखिए कितना---

अ ये यूँ तो इंटर स्तरीय हैउच्च विद्यालय जमुई देख सकते हैंकितना अच्छा जगह है कितना सुन्दर गेट लगा हुआ है ऊपर मे लिखा हुआ है प्लस टू--

और ये देखिये ऊपर से नीचे पानी आता है| कितना सुन्दर झरना टाइप ये है पहाड़ देखिये कितना अच्छा लग रहा देखने में| और पत्ता सब भी है यहाँ पे हरा-भरा देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है देखने में।